यहा पे मुझे एक झरना दिखाई दे रहा है जो कि बहुत उपर से गिर रहा पहाड़ के उपर से पहाड का रंग भी काला दिखाई दे रहा है और सारे लोग यहा नहा रहे है और कुछ पड़े यहा पर हरे हरे दिखाई दे रहे है।

नीला आसमान दिखाई दे रहा है और नीला मैदान दिख रहा है तोफगाड़ा मुझे हारा और काला दिखाई दे रहा है।

और काफी सारे पेड़ यहा पे मुझे देखने को मिल रहे है और एक रास्ता है जो की बहुत ही लंबी तरफ से सीधा जा रहा है। और ये-- ]

यहा पे मुझे एक स्विमिंग पूल देखने को मिल रहा जिसके पानी का रंग मुझे नीला दिख रहा है जो की बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है।

घने बादल और आसमान दिख रहा और हरा पानी मुझकों दिख रहा और नीले और नीचे टाईल्स लगी हुई है। कुछ पेड यहा दीख --